नमस्कार ubuntu linux 1604 operating system में desktop customization पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम launcher और निम्न के बारे में सीखेंगेः launcher में एप्लिकेशन्स कैसे जोड़ें और हटाएं
multiple desktops का उपयोग कैसे करें
internet connectivity sound settings कैसे करें
time and date settings कैसे करें और अन्य user accounts पर कैसे जाएं
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1604 operating system
launcher से शुरू करते हैं
launcher ubuntu linux desktop में default बाईं ओर panel है जिसमें कुछ default applications हैं
launcher अक्सर उपयोगित applications तक access करना आसान बनाता है
हम launcher पर इसके desktop shortcut पर क्लिक करके program launch करते हैं
default रूप से launcher में कुछ applications होते हैं
अपनी आवश्यकतानुसार launcher को customize करना सीखते हैं
मेरे नियमित कार्य के लिए मुझे applications चाहिए जैसे terminal libreoffice writer gedit इत्यादि
इन applications को launcher में जोड़ते हैं
ऐसा करने से पहले मैं कुछ applications हटाऊँगा जो मुझे नहीं चाहिए
मैं launcher से amazon application हटाना चाहता हूँ
amazon application icon पर जाएं फिर rightclick करें और unlock from launcher चुनें
आप देख सकते हैं कि amazon application icon launcher से हट गया है
इसी तरह से हम सभी shortcuts को हटा सकते हैं जिनका हम लगातार उपयोग नहीं करते हैं
मैंने launcher से कुछ applications हटाए हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं
add मैं launcher में terminal shortcut जोडूँगा
launcher के ऊपरी ओर पर dash home पर click करें
search bar में type करें terminal इसे खोलने के लिए terminal आइकन पर क्लिक करें
आप launcher पर terminal icon देख सकते हैं
launcher पर terminal icon fix करने के लिए पहले इस पर rightclick करें फिर lock to launcher चुनें
launcher पर application shortcuts fix करने का अन्य तरीका dragging और dropping है मैं इसे अभी समझाऊँगा
dash home खोलें और search bar में type करें gedit
gedit icon को launcher पर drag करें
अब launcher पर gedit icon drop करें आप देख सकते हैं gedit शॉर्टकट अब launcher में जुड़ गया है
ऐसे हम launcher पर shortcuts जोड़ सकते हैं
ubuntu linux os में अगला महत्वपूर्ण feature multiple workspace या desktop है
कभीकभी हम multiple applications पर कार्य कर सकते हैं
और हमें एक application से दूसरे पर जाने में कठिनाई हो सकती है
इसे अधिक आसान बनाने के लिए हम workspace switcher का उपयोग कर सकते हैं
desktop पर वापस जाएं
ubuntu 1604 में multiple workspaces default रूप से नहीं दिखाई देता है
इसे enable करने के लिए system settings और फिर appearance पर click करें
appearance window में behavior टैब पर click करें
यहाँ enable workspaces option चुनें यह launcher पर मल्टिपल workspaces आइकन enable करेगा
window बंद करें
launcher पर workspace switcher icon पर जाएं और इस पर click करें
यह 4 desktops के साथ 4 quadrants दिखाता है
default रूप से ऊपरी बायां desktop चयनित है
यह वह desktop है जिसमें हम कार्य कर रहे हैं
double इस पर doubleक्लिक करके दूसरा desktop चुनें
मैं यहाँ launcher में terminal icon पर क्लिक करके terminal खोलूँगा
अब फिर से workspace switcher पर click करें
आप terminal को दूसरे workspace और desktop को पहले पर देख सकते हैं
इस तरह आप multiple desktops पर कार्य कर सकते हैं
अब पहले desktop पर वापस आएं
trash launcher पर अन्य महत्वपूर्ण icon है
trash में सभी डिलीट की हुई files और folders होते हैं यदि हम गलती से files डिलीट करते हैं तो हम इसे trash से पुनः प्राप्त कर सकते हैं
इसके प्रदर्शन के लिए मैं hello txt डिलीट करूँगा जो मेरे desktop पर है
file पर rightclick करें और move to trash option पर click करें
इसे पुनः प्राप्त करने के लिए launcher में केवल trash icon पर click करें trash फोल्डर खुलता है
file चुनें इस पर rightclick करें और restore option पर click करें
trash folder window बंद करें और desktop पर वापस आएं
हम file देख सकते हैं जिसे हमने पहले डिलीट किया था अब पुनः प्राप्त हो गई है
हमेशा के लिए अपने system से file shift करने के लिए पहले इसे चुनें और फिर shift + delete कीज दबाएं
dialog box पूछता है are you sure you want to permanently delete hello txt delete box पर क्लिक करें
फिर से trash icon पर click करें
हम trash folder में file नहीं पा सकते हैं क्योंकि यह हमारे system से हमेशा के लिए डिलीट हो गई है
क्या आप desktop की एक ही theme को देख कर ऊब नहीं गए हैं इसे बदलते हैं
launcher पर जाएं और system settings और फिर appearance चुनें
appearance window खुलता है
यहाँ themes टैब में हमारे पास पहले से संस्थापित कई themes हैं
अपनी पसंद के अनुसार इन themes के साथ खेलें
जैसे ही आप किसी एक पर click करते हैं आप देख सकते हैं कि परिवर्तन desktop पर लागू होता है
window बंद करने के लिए छोटे x icon पर click करें
अब हम desktop के ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध icons देखेंगे
पहला internet connectivity है
यदि आप किसी lan या wifi network से जुड़े हैं तो connection स्थापित हो गया है
आप इन्हें यहां देख सकते हैं
network चुन सकते हैं जो आपने access किया है
network enable या disable करने के लिए enable networking option को check और अनचेक करें
हम edit connections option का उपयोग करके networks edit कर सकते हैं
अगला icon sound है
आप यहाँ एक slider देख सकते हैं
यह हमारी पसंद के अनुसार audio स्तर को बढ़ाने या घटाने में हमारी मदद करता है
हम sound settings पर क्लिक करके अपने system के ध्वनि स्तर को और अधिक समायोजित कर सकते हैं इस विंडो में settings को स्वतः एक्स्प्लोर करें
अगला icon time & date है यदि हम इस icon पर क्लिक करते हैं calendar खुलता है
हम वर्तमान तारीख महीना और वर्ष देख सकते हैं
arrow buttons हमें अपनी पसंद के अनुसार अन्य महीनों और वर्षों में स्थानांतरित करता है
हम time & date settings पर क्लिक करके तारीख और समय edit कर सकते हैं
इस option का स्वतः explore करें
अब wheel या power icon पर click करें
यहाँ हम log out और shut down options के साथ कुछ shortcut options देख सकते हैं
हम अपने system में उपलब्ध सभी user accounts भी देख सकते हैं
हम उस विशेष user पर क्लिक करके जिस user account पर चाहें जा सकते हैं
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने launcher के बारे में सीखा और सीखा कि launcher में एप्लिकेशन्स कैसे जोड़ें और हटाएं
multiple desktops का उपयोग कैसे करें
internet connectivity sound सेटिंग्स कैसे करें
time & date settings कैसे करें और अन्य user accounts पर कैसे जाएं
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
क्या आपके पास इस spoken tutorial पर कोई प्रश्न है कृपया इस साइट पर जाएं
minute और second का चयन करें जहाँ पर आपको प्रश्न है अपने प्रश्न को संक्षेप में बताएं
हमारी team का कोई व्यक्ति उनका जवाब देगा
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ